बहोत ही बड़ा बस स्टैंड है जिसमें लाइट भी लगी हुई है।

इस तस्वीर में जो फोटो है यह एक बड़े से स्टेशन की है।

एक बड़ी सी लाल रंग की कुर्सी है। जिसमें एक लड़का बैठा है। उसने नीले रंग की शर्ट पहेनी है।

इस तस्वीर में फोटो ये किसी मार्केट की है जो कि फूल कई फूल की दुकान है सफेद रंग के फूल है।

इस तस्वीर में जो फोटो है एक नर्सरी की है जिसमें नी लाल रंग शेड लगा है बहोत सारे गमले के पॉट रखे हुए हैं बहोत सारे पौधे भी रखे हैं।

इस तस्वीर में जो फोटो है यह एक स्टेशन की है।

जोकि बहोत बड़ा है बाहर बहोत सारी गाड़ियां खड़ी है ऑटो खड़ी है।

इस तस्वीर में जो फोटो है इसमें ये एक पुलिस स्टेशन की है जिसमें एक सफेद रंग की पुलिस की कार खड़ी है।

इस तस्वीर में जो फोटो है। ये किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल की है।